यहाँ पास बहुत सारे मूर्ते है अच्छा-अच्छा सुंदर-सुंदर यहाँ पास फुल है बहुत अच्छा लड़का है अउ पीला कलर का लेडीज है चेयर है और एक ठो लड़का बैठा है सफेद कलर का एक ठो लड़का है सीढ़ी है ऊपर--

यहाँ पास सब बहुत सुंदर घर दिख रहा है यहाँ पास एक लड़का कुछ देख रहा है एक ठो ची --

--ला एक ठो आईब्रश दिख रहा हैं और इधर एक ठो बैठने वाला हैं एक ठो बॉडी बिल्डर वाला दिख रहा हैं ये लाइट दिख रहा हैं बहुत सारे --

रॉड दिख रहा है कुर्सी दिख रहा है आदमी काम करवा रहा है किसी को एक ठो लेबर दिख रहा है पूरा कपड़ा बॉंधते हुए नीचे ईंटा बहुत सारा दिख रहा है।

--क्या तो बोलते है वहाँ पास सराट टाइप का कुछ है बस ऊपर लाइट दिख रहा है नीचे भी लाइट दिख रहा है।

सफेद पटी सा कुछ देख रहा है ऊपर कुछ कंपनी है और गिल टाइप का कुछ चीज है यहाँ पास पंखा भी चल रहा है आदमी भी है।

टेबल के पास कुछ चीज है कुछ कपड़ा भी है यहाँ पस और क्या चीज है अच्छा-अच्छा चीज है।

एक ठो घर दिख रहा है यहाँ पास एक ठो आदमी चल रहा हैऔर इसके बगल एक ठो पानी दिख रहा है दो ठो अदमी है ऊपर में और एक ठो --

औ ग्राउंड खे फुटबॉल खेलने वाला कुछ चीज दिख रहा है उस बगल में एक ठो घर दिख रहा है ऊपर लाइट दिख रहा है नीचे भी लाइट दिख रहा--

ऊपर सीढ़ी टाइप कुछ है ऊपर ऐ_सी दिख रहा है एक लाइन से लाइट दिख रहा है वहाँ पस और नीचे कुछ चीजें है।

यहाँ पस बिल्डिंग दिख रहा है तीन छत का नीम का पेड़ दिख रहा है तार दिख रहा है पोल खूटा दिख रहा है डिजाइन दिख रहा है खिड़की दिख रहा है अच्छा-अच्छा।

कुछ दिख रहा है यहाँ पास नीचे प्लास्टिक में पैक है बहुत सारा उस बगल भी बंडल-बंडल है कम से कम मार चार-पाँच पीस होगा नीचे कुछ वस्त्र दिख रहा है।

राजपुर वाला कुछ ओ बोर्ड दिख रहा है लाइट दिख रहा है यहाँ पर अ -न- त- सरस्वती पुजन दिख रहा है इस बगल पे--